जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा है गणतंत्र द्वार साथ ही में उसी द्वार से लगकर रोड जा रही है जिस पे एक टेम्पो भी जा रहा है जिसमे लोग बैठे दिखाई दे रहे है।

गोया की अलग-अलग क्रियाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं साथी में एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ है और कुछ दब्बल रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य को देख कर यह प्रतीत हो रहा है यह किसी बाजार की दृश्य है।

तकिया दबाए पीछे एक पीले रंग का पर्दा दिख रहा है और एक चार्जिंग पॉइंट भी सफेद रंग का दिख रहा है।

जिसमें एक चस्मा पहना हुआ शख्स एक बड़े ही सुन्दर दिलरुबा एक आकृति के सामने बड़े ही अच्छे रूप से फोटो खींचा रहा है और पीछे भी दो एक-दो लोग बैठे दिखाई दे रहे है।

जहां पर बहुत सारे पर्यटक आते है और बड़ा ही सुन्दर दृश्य है क्यूंकी यहां पर बड़े ही प्यारे-प्यारी झूले लगा रखे है और अच्छे से मैन्टैन कर रखा है पार्क को।

इस दृश्य को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि एक आदमी अपनी मिरर सेल्फी ले रहा है।

जिन्होंने एक सफेद रंग का सूट और लाल रंग की चुन्नी पहन रखी है और पीछे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

बड़ी ही इसमें सुंदर सारी पेहेन रखी है इस महिला ने और मेक-अप भी बहुत अच्छा कर रखा है किसी स्कूल का दृश्य प्रतीत होता है।

चर्च के अन्दर का दृश्य है जहाँ पर एक औरत दिखाई दे रही है जो कुछ स्पीच दे रही है साथ ही में --

लोगो के मनोरंजन के लिए और पीछे बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और बड़ा मैदान दिख रहा है पीछे की तरफ।

इस दृश्य से यह पता चल रहा है कि यह कोई बड़ा सा मैदान है जहाँ पर बहोत सारे लोग हैं जो किसी चीज को देख रहे हैं एक ही कतार में।

जहां पे कुछ महिलाये एक अद्भुत डान्स परफॉर्मेंस दे रही है एक अद्भुत नृत्य कर रही है और बहुत अच्छी वेश-भूषा सब ने पेहन रखी है।

इस दृश्य को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि यह किसी मकान या बिल्डिंग के बनने का दृश्य है।

इस दृश्य को देख क्रर यह पता चल रहा है यह किसी स्कूल असेम्ब्ली का दृश्य है जहाँ पर बहुत सरे बच्चे बिलकुल अटेंशन पोजीसन में खड़े है।